यह एक हेयर कटिंग सैलून है ।

और सैलून हम देख सकते की बहुत बड़ा है। इसमें तरह-तरह के लाइट्स लगे हुए हैं। इसमें टी.वी. भी लगे हुए हैं। जिससे जो बैठे हुए है उस वो बोर न हो जाएँ।

यह प्रतिमा पीतल का बनाया गया है और यह प्रतिमा का दृस्य देखते ही बनता है | इसको देखते हुए एक युवक इसके साथ एक फोटो खींचा रहा है जो की बहुत दुर से आया है ।

यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है क्यूंकि यहाँ पर कुछ बच्चे एवं लड़के योगा कर रहें हैं। यह योगा हमारे शरीर के लिए बहुत जरुरी होता है।

यह एक गराज है और यहाँ हम देख सकते हैं की एक आदमी अपने कार को ठीक करवा रहा है। यहाँ पर गैराज मैकेनिक बहुत अच्छे से काम कर रहें हैं।

यहाँ पर हर तरह से नाले का पानी आकर इस तालाब में जमा होता है फिर भी हम देख सकते हैं की कुछ लोग इस तालाब में आकर नहा रहें हैं। यह पानी बहुत दूषित लगता है और यह पानी हमारी सेहत के लिए अच्छा नही।

यहाँ हम देख सकते हैं की काफी मात्रा में लोग आते हैं।